यहां पे तीन चार लोग खड़े हुए हैं जो कोट पैंट पहने खड़े हुए हैं।

दो तीन कुर्सियां वगैरा हैं और गुलाबी कलर के पर्दे पड़े हुए हैं।

नारंगी हरे लाल झंडे लगे हुए हैं।

ये कंपनी है इसके आगे बहुत सारी मोटर साइकिल खड़ी हुई हैं।

छोटे बड़े पेड़ लगे हुए हैं अ वहां पे एक सफेद कंपनी उसके आगे चार पहिया गाड़ी गाड़ी खड़ी हुई है सारी--